यहाँ पर हमे हरा हरा कुछ चादर सा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत हि ग्रीन है।

और वहाँ पर प्लस का चिन्ह बना है जोकि पीले कलर से है और एक मकान है मकान पर अम्म ग्रीन कलर का रंग पुता हुआ है और टीन शेड भी है।